व्यक्ति ने कंधे पर बैग टांग रखा है तथा हैंड मे वॉच पहनी हुई है।

स्टेज पे एक दूल्हा तथा दुल्हन खड़े हुए है जो अपनी फोटो क्लिक करवा रहे हैं।

यह एक लक्ष्य इंटरनेशनल अकेडेमी का बोर्ड लगा हुवा है ।